घीव है दूध है देखकर हमको बहोत अच्छा लगा--

पेंसिल है मिट्टा है कटर है पेन है एक व्यक्ति इसमें बैठा है बुकें रखी हैं देखकर हमको बहोत अच्छा लगा--

एक कमरा है इसमें कार खड़ी है देसी है हैं।